इस क्षेत्र में एक बड़ा मंदिर दिख रहा हैं पूजा रखी दिख रही हैं कुछ दीवारें नजर आ रही हैं बहुत सारे फ्लावर की माले नजर रही है एक खंबा दिख रहा हैं।

इस चित्र में एक बहुत बड़ी बिल्डिंग दिख रही कुछ जीने जरा बहुत सारे छो-छोटे पेजरीफ पौधे दिख रहा हैं और बड़े-बड़े पेड़ भी नजर आया हैं पेड़ की लकड़ियां भी बहुत सारी दिख रही हैं।

इस चित्र में एक बहुत बड़ी बिल्डिंग दिख रही हैं कुछ लोग बेटे नजर आ रहा हैं दीवारें दिख रही हैं गैस सिलेंडर रखा नजर आ रहा हैं एक सोफा रखा दिख रहा हैं बेड रखे हुए दिख रहे हैं।

इस चित्र में बहुत बड़ी ज्वेलर्स की दुकान दिख रही हैं सफेद दीवार नजर आ रही हैं बहुत सारे लोग खड़े दिख रहा हैं टेबल दिख रही है चेयर दिख रही हैं कुछ फ्लावर्स की माला रखी नजर आ रही हैं।

इस चित्र में लाल कार खड़ी दिख रही हैं दोनों खड़े नजर आ रहा हैं वाइट दीवार दिख रही हैं कुछ पोस्टर लगे नजर आ रहे हैं।

इस चित्र में एक बहुत बड़ा किला दिख रहा है कुछ लोग जाते नजर आ रहे हैं बहुत सारे लोग दिख रहे है बहुत सारे पत्ते नजर आ रहे है बहुत सारे पेड़ लगे दिख रहे हैं।

इस चित्र में बहुत सारे लोग दिख रहे हैं कुछ लोग बैठे नजर आए हैं बहुत सारे सोफे दिख रहे हैं बहुत सारी मछलियां रखी हुई नजर आ रही हैं एक मेट दिख रहा हैं।

इस चित्र में बहोत सारे रिंग नजर आ रहे हैं अलग अलग कलर के बहोत बड़े बड़े झूले देख रहे हैं आसमान नजर आ रहे हैं कुछ पानी जो आता हुआ दिख रहा है।

इस चित्र में एक साइकिल दिख रही हैं कच्ची सी सड़क नजर आ रहा हैं ये ब्लू शड्डा दिख रहा हैं कुछ बिल्डिंग बनी नजर आ रही हैं कुछ पेड़ दिख रहे हैं छोटी-मोटी घासे नजर आ रही हैं।

इस चित्र में एक छत दिख रही हैं वाइट कलर की मीना नजर आ रही है एक चांद दिख रहा हैं कुछ पेड़ लगे नजर आ रहा है एक बड़ी सड़क दिख रही हैं वाइट कलर का पाइप नजर आ रहा हैं।

इस चित्र में एक बहुत बड़ी बिल्डिंग दिख रही हैं दो सोफ़े रखे नज़र आ रहे हैं कुछ पेड़ लगे दिख रहे हैं कुछ लोग खड़े दिख रहे हैं टेबल रखी नज़र आ रही हैं कांच की विंडो दिख रही हैं।

इस चित्र में बहुत सारी बाइक दिख रही हैं कुछ एक्टिवा खड़ी नजर आ रही हैं एक रूम दिख रहा हैं ऑफिस नजर आ रहा हैं कुछ लोग खड़े दिख रहे हैं।

इस चित्र में बहोत सारी मछलियां रखी दिख रही है बहुत सारे डब्बे रखे नजर आर एक बाल्टी दिख रही बहोत सारे टाइल्स नजर आ रहा है एक बड़ी सी दीवार नजर आ रही है।

इस चित्र में बहुत सारी सब्जियां रखी दिख रही हैं ब्लैक दिवार नजर आ रही हैं बहुत सारे टिंडे हरी मिर्च कैरोट कैबेज वगैरह नजर आ रही हैं।

इस चित्र में बहुत सारे गमले रखे दिख रहे हैं बहुत सारे पेड़ लगे नजर आ रहे हैं एक रेलिंग दिख रहा हैं ये बड़ी सी सड़क नजर आ रहा हैं ये ब्लैक कलर के गमले रखे देख रहे हैं।

इस चित्र में एक बड़ी बिल्डिंग दिख रही हैं कुछ पेड़ नज़र आ रहे हैं बहुत सारी बाइक खड़ी दिख रही हैं कुछ कार खड़ी नज़र आ रही हैं।

इस चित्र में एक बड़ा तालाब दिख रहा हैं कुछ लोग नजर आ रहे हैं दो कश्ती दिख रही हैं जाल नजर आ रहा हैं कुछ पेड़ नजर आ रहे हैं।